मतलब पकड़ा गया हे और एतना छोटा बच्चा को नहीं पकड़ना चाहिए काहे की जंगल का जानवर हे और जंगल का जानवर को नहीं पकड़ना --

देखने यहाँ पर बहुत ही अच्छे दार जहर रहे हैं अऊ बहुत सारे लड़के लड़किया है कुछ और हुआ है यहाँ देखने आया पानी यहाँ सी--

हैलो गाइस आप देख रहे है यहाँ पर एक ठो टैक्टर खड़ा है जुताई करता है ई हे नीला कलर का और आप देख रहे है कितना अच्छा टैक्टर खड़ा है ।

यह पर कुछ करे हे डॉक्टर लोग अब देख सकते है। यहाँ पास उसके बाद बहुत सारे लोग हे लोगो हे लोग हे। बहुत सारे आप गिन भी नही सकते--

हैलो गाइज़ आप देख सकते है कितना अच्छा जगह है और यहाँ पर यहाँ पर बहुतिच अच्छा जगह है।